बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं आ रहे है और पंडाल भी लगे हुए हैं डेकोरेशन में--

फिर गोला हैं रॉड है बॉल है शीशा सब हैं और बोर्ड सब रखा हुआ हैं इसमें कि जो हैं लाइट बोड सब है रखा हुआ--

एक स्टूडियो है स्टूडियो की जो है हॉल के अंदर है जिसमें कि चार पट्टी शीशा लगा हुआ है ऊपर लाइट है बोल बत्ती है।

स्टूडियो के अंदर एक आदमी है और इधर चेयर है।

एक आदमी बैठकर फोटो ले रहा हैं और कुछ दुकानें भी है इसकी साइड में--

बगल में एक मॉल है और आठ-दस गाड़ी आगे खड़ा लगा हुआ अमूल का ये प्रॉडेक्ट है बगल में और एक गाड़ी भी लगा हुआ साइड में।

ऊपर से एक चारों पटरी से घेरा हुआ भी है एक ऊपर से प्लास्टिक घेरा हुआ है।

दुकान है दुकान में जो कि बहुत सारे मिक्सर बिक रहा है मिक्सर है और भी बहुत इलेक्ट्रॉनिक सामान है।

जिसमें की बहुत सा प्रोडक्ट का बहोत सारा सामान भी है जिसमें की--

एक बड़ा सा सड़क है और दोनों पट्टी जो बाउंड्री है बाउंड्री के अंदर गेट है।